इस चित्र मे हम देख सकते है की यहापर एक आदमी कीली दे रहा है और वो औरत लेकर उसको अह उसका प्रार्थना कर रही है और हम यहापर देख सकते है की वो गाड़ी लाल रंग की दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को एक ऑफिस ऑफ दी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करके लिखा गया है और यहाँ पर इसको बिल्डिंग को नीले और सफ़ेद रंग से पेंट मारा गया है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा --

इस चित्र मे हम देख सकते है की यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रही है। जिसको अच्छे से सजाया गया है। जिसको पेंट मारा गया है। जिसको बिजली डाली गयी है। अच्छे से और यहाँ पर हम देखेंगे तो कई लोग आ रहे है और जा रहे --

इस चित्र मे हम देखेंगे तो यहा पर कई लोग कारखाने मे काम करते हुए नज़र आ रहे है।

इस चित्र मे हम देखेंगे तो हमारे को पता चलता है की यहाँ पर कुछ आ मेला चल रहा है और हमे यहाँ पे देखेंगे तो पानी को अलग तरह का उड़ाया गया है।

चित्र मे हम देख सकते है की यहाँ पर कही बच्चे खेल रहे है नजर आ रहे और यहाँ पर हम देख सकते है की कही बच्चे डांस कर रहे है।